सूरत दिख रही है। सामने एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग का रंग पर्पल है।

यह एक हॉस्पिटल कि लग रही है। सामने में बड़ा सा पोस्टर लिखा हुआ है जिसमें सिटी हॉस्पिटल --

रास्ता काफी लंबा है सामने बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

लगा हुआ है| सामने एक टंकी दिख रही है जोकि हरे रंग कि है |

एक पेट्रोल पंप की है पेट्रोल पंप पूरा खाली है पेट्रोल पंप में एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं।

यह दृश्य एक सलोन की है इस सलोन का नाम बाल दाढ़ी स्पा एंड सलोन है | इस दृश्य में --

काम कर रहे हैं सामने तीन चेयर लगी हुई है जो नीले रंग की है।